sedद stream editor के इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम sed command का उपयोग देखेंगे
हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए
मैं ubuntu लिनक्स version 1204 operating system और gnu bash version 4224 उपयोग कर रही हूँ
ध्यान दें इस tutorial के अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
पूर्व आवश्यकताओं में
आपको लिनक्स terminal का मौलिक ज्ञान होना चाहिए
सम्बंधित tutorials के लिए कृपया हमारी दर्शायी website पर जाएँ:
अब sed के परिचय के साथ शुरू करते हैं
sed एक stream editor है
sed file की एक विशेष location में text के कुछ पैटर्न्स ढूँढता है
यह कुछ display या editing function क्रियान्वित करता है
editing function जैसे मिलान किये हुए text में समावेश करना प्रतिस्थापन करना और मिटाना
अब हम कुछ उदाहरणों के साथ शुरू करते हैं
हम देखेंगे कि sed command प्रयोग करके print कैसे करते हैं
मेरे पास home directory में seddemo txt नामक एक file है
अब इसका विषय वस्तु देखते हैं
इस file में हमारे pass कुछ प्रविष्टियाँ हैं जैसे roll नंबर nem stream marks pass या fail और छात्रवृत्ति
अब माना कि हम file की दूसरी line print करना चाहते हैं
इसके लिए हमें अपने keyboard पर एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलना है
अब type करें
sed space single quotes में space 2p single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
यहाँ 2 दूसरी line की location दिखाता है
p वह क्रिया दिखाता है जो printing p है
अब output देखते हैं
यह पूरी file दिखाता है पर देखें कि दूसरी line दो बार printed हुई है
यह क्रिया p का default परिणाम है
सिर्फ दूसरी line print करने के लिए
type करें
sed spacen space single quotes में 2p single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
हम देखते हैं कि सिर्फ दूसरी line printed हुई है
n silent mode के लिए है जो सारे अनावश्यक output को दबा देगा
फिर हमें stream में वह location देनी है जो हम edit करना या दिखाना चाहते हैं
हम दूसरी line चुनना चाहते हैं
p वो क्रिया दिखाता है जो हम करना चाहते हैं यानी दूसरी line print करना
और seddemo txt file का name है
यह sed sed command का सामान्य रचनाक्रम है
अब file की आखिरी line print करते हैं
मैं prompt को साफ करती हूँ
अब type करें
sed spacen space single quotes में dollar चिन्ह $p single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
हम देखते हैं कि आखिरी line printed हुई है
अब text editor पर वापस आते हैं
माना हम तीसरी से छठी तक की प्रविष्टियाँ print करना चाहते हैं
इसके लिए हमें terminal पर निम्न type करने की ज़रुरत है:
sed spacen space single quotes में 3 comma 6p single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
output में तीसरी line से छठी line तक प्रदर्शित hota है
प्रक्रिया से पहले exclamation mark लगाकर किसी प्रक्रिया का विपरीत भी कर सकते हैं
माना कि अगर हमें तीसरी से छठी lines छोड़कर बाकी सारी lines print करनी हैं तो हम type करेंगे:
single quotes के बाद seddemo txt
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
line addressing और context addressing
अब तक हमने file में so लाइनें निर्दिष्ट की हैं जिनमें क्रिया किये जाने की ज़रुरत है
इसे line addressing कहते हैं
line numbers के द्वारा निर्दिष्ट address
यह addressing का एक तरीका है
addressing का दूसरा तरीका context addressing है
lines जो विशेष context रखती हैं उन्हें विशेष शब्द कहते हैं
अगर हम उन lines पर क्रिया करना चाहते हैं जिसमें एक विशेष शब्द है हम context addressing प्रयोग करते हैं
regular expressions प्रयोग किये जा सकते हैं
अब एक उदाहरण देखते हैं
अपने editor पर वापस आते हैं
माना हम वो लाइनें print करना चाहते हैं जिनमे computers शब्द है
अपने terminal पर वापस आते हैं
अब type करें
sed स्पेस n स्पेस सिंगल कोट्स में फ्रंट स्लैशस्क्वायर ब्रैकेट खोलें cc स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें omputers/p सिंगल क्वोट्स के बाद space seddemotxt
enter दबाएं
हम देखते हैं कि वे लाइनें जिनमें computers शब्द है प्रदर्शित हुई हैं
हम pattern square brackets में लिखते हैं
यह square brackets में कोई एक या दोनों characters मिलान करता है
जब हमें patterns के मिलान की ज़रुरत होती है तो patterns को front slashes के बीच टाइप करना होता है
w विकल्प प्रयोग करके भी हम इसे file में print कर सकते हैं
इसके लिए type करें:
sed spacen space single quotes में front slash square bracket खोलें cc square bracket बंद करें omputers/w space computer _ student txt single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
अब सारी मिलान की हुई लाइनों को computer _ student txt file में स्थानांतरित किया जायेगा
अब computer _ student की विषय वस्तु देखते हैं
type करें cat space computer _ student txt
enter दबाएं
हम प्रविष्टियाँ देखते हैं
हमारे पास we patterns भी हो सकते हैं जिन्हें हम भिन्न files में लिख सकते हैं
अब prompt को खली करते हैं
type करें: sed spacen spacee space single quotes में front slash /electronics/w space single quotes में electro txt single quotes के बाद e space single quotes में front slash /civil/w space single quotes में civil txt single quotes के बाद space seddemo txt
enter दबाएं
यहाँ e multiple methods को संयुक्त करने में प्रयोग होता है
यह दो files electro txt और civil txt बनाएगा
देखने के लिए कि इनमें क्या है type करें:
cat space electro txt
यह electronics शब्द वाली प्रविष्टियाँ दिखायेगा
अब civil file की विषय वस्तु देखते हैं
type करें cat space civil txt
enter दबाएं
यह civil शब्द वाली प्रविष्टियाँ दिखायेगा
हम commands के कुछ अधिक set अन्य tutorial में देखेंगे
मैं यही program प्रयोग करुँगी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
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा sed
sed प्रयोग करके प्रिंट करना
लाइन एड्रेसिंग
context addressing
नियत कार्य में
वही समान text file seddemo txt प्रयोग करके
छठी से बारहवीं line तक के records print करने की कोशिश करें
नीचे दिए link पर उपलब्ध video देखें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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद